कोई सा --

इनको देखने कि मनमोहक वादिया है बहुत ही अच्छे से देखो कितनी अच्छा फैलाए हुए हैं ये इनके रूप को इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ में इनके बारे में।